अच्छे अच्छे ड्रेस ले सकते हैं अपने आप को सुंदर बना सकते हैं यहां पे टैटू बनवा सकते हैं डिजाइन करवा सकते हैं अपने हाथों पे अच्छा मॉल है एक अच्छे टॉयलेट की व्यवस्था है अच्छी पार्किंग है इस मॉल के अंदर।

ये एक होटल है अच्छा खासा होटल है यहां पे कांच की रेलिंग लगी हुई सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए बाहर जाने के लिए गेट है यहां पर दो आदमी खड़े हैं जो एक रिसेप्शन है।

पीछे गेट बना हुआ है पीछे सिस्टम लगा रखा है साइड में सीढ़ियां बनी हुई हैं कलर की साड़ी पहनी है लड़के ने सफेद कलर की पैंट पहनी है और --